यहाँ पे मुझे गिफ्ट शॉप नजर आ रहा है जिसमे गमले भी दिखाई दे रहे है ऊपर से रोज फ्लाउअर प्लास्टिक फ्लाउअर भी नजर आ रहे है।

यहाँ पे एक होटल नज़र आ रहा हैं जहाँ पे काउन्टर के सामने तीन बंदे बैठे हुए है और साइड मे एक ब्लू कलर की --